यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

इसमें डोरियाँ है डोरियाँ लगी हैं आसमान दिखाई दे --

बिल्डिंग के उपर बाहर बोर्ड लगा है। उसपे कुछ लिखा हुआ है।

और यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है सफ़ेद कलर की।

उसपे उपर बोर्ड लगा है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है।

और यहाँ पे अ बाउंड्री बनी हुई है जो तार फँसिंग की है।

और यहाँ फिर रोड के उस साइड बाउंड्री बनी हुई है।

और यहाँ पे तीन डॉल खड़ी हैं जो कपड़े पहने हैं।

कार्टून रखे हुए है यहाँ पे बहोत सारे खोके रखे हुए हैं।

और बिल्डिंग के बाहर से जीना लगा हुआ है।

इन्होंने व्हाइट कलर की यूनिफार्म पहनी है मास्क ल --

और यहाँ पे एक अ बहोत बड़ा अ ग्राउंड टाइप का है जिस --

चेयर पे एक अंकल बैठे हैं।

और यहाँ पे उपर टीन सेट बना हुआ है।

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

और मंदिर के बाहर यहाँ पे बोहोत सारी घंटिया लगी हैं।

उन छत्रियो के नीचे खुर्ची रखी हुई हैं।

यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पेड़ है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

रखे हैं कुछ डिब्बे में बिस्कुट रखे हैं नमकीन रखे हैं चॉकलेट रखे हैं।

दूल्हा सफ़ेद कलर की शेरवानी पहने हुए है।

कुछ अ- लडकियाँ है। चार-पांच जो फिसल पट्टी पे से अ- फिसल रही है।

यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई है जो हाथ में पॉलिथीन रखे है। एक --